और पांच छे लड़का के चेयर टेबल पे बैठ के कुछ प्रोजेक्टर के तैयार कर रहे हैं जो व्हाइट कलर का नजर अ आ रहा है।

ग्रीन कलर का ऊपर का यूनीफम है और पीछे में एक उ --

पीले कलर का है यहाँ पर एक लड़का खड़ा है गमछा पहन के ।

कुछ पेड़-पौधे लगे हैं जो हरा-भरा है और पीछे में जो --